यहां मां शारदा का चित्रण किया गया है जो की एक हाथ में वीणा ली हुई है और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है माता बहुत ही--

खूबसूरत नजर आ रही है जय मां शारदा भवानी।

वाव यह एक टॉउन एरिया या नगर का चित्र नजर आ रहा है जो कि मुझे बेहद खूबसूरत लग रहा है यहां पेड़ पौधे--

यंहा जो चित्रण है वो बजाज शोरूम का चित्रण है।

चित्र में दो मकान है और दो मकान के बीच की जो गली जा रही है उस चीज का चित्रण यहां किया गया है।

एक आदमी जाता हुआ नजर आ रहा है और एक स्कूटी खड़ी हुई है इत्यादि।

यहाँ किसी माता के मंदिर का चित्र दिया गया है अंदर रूम में माता अ जो बैठी है।

यह स्कुल के अन्दर क्लास रुम का एक चित्रण है जिसमें लगे हुए है डेस्क और बेन्चिस और सामने बड़ा सा ब्लेक बोर्ड है सफ़ेद रंग --

इस चित्र में एक कार का चित्रण किया गया है जो की ग्रेइश कलर में है और बहुत ही खूबसूरत लग--